क्लास रूम के अंदर का फोटो है जो सारे बच्चे मिल जुल कर कुछ बना रहे है प्लेट में और ये सब कुछ रंगोली होली सब की तैयारी चल रही है।

व्हाइट कलर क दीवार है ओर ग्रील है बड़े से ओर एक दो एक टीचर खड़े है जो देख रहे है ओर कुछ बच्चे खड़े भी है ओर सभी अपने अपने प्लास्टिक में सब कुछ बना रहे है।

पेंट भी है ब्लू कलर के भी और नीचे टाइल्स भी हैं बहुत अच्छा लग रहा है काफी साफ सुथरा है कुछ बच्चे पेपर काट भी रहे हैं।

एक क्लासरूम है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे सब हैं जो कुछ बना रहे हैं।

ढेर सारे बच्चे हैं जो ड्रेस पहने हुए हैं ब्लू कलर की टीशर्ट और ब्लू कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शूज और एक बच्चे चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं और सभी के --

कोई स बच्चा ने इंची रखा हुआ है टेबल पे फेविकोल टेप नीचे काफी काटफूट के कचरा फेंक जमा दिए है और पीछे एक है कुछ पौधे से --